और सूखे सूखे से पेड़ इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं ।

मुझे यहाँ पर बीच में एक गोल सा चबूतरा दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर--

पीछे की तरफ कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है ऊपर की तरफ कुछ तार--

बिच में यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई है।

जो की कुछ गेरुआ कलर के है कुछ हरे कलर के है।

ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है जो की ग्रे कलर में है।

और कुछ खड़ी हुई है।

ये यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए बहोत सारी अ खिलोने लगे हुए है।

यहाँ पर कुछ लोग एक स्टेज दिखाई दे रहा है और यहा पर सीढ़ी बनी हुई--

कांच का टेबल भी दिखाई दे रहा हैं जी--

ऊपर की तरफ कुछ गद्दे दिखाई दे रहे है।

मुझे यहा पर रिक्शा एक ई रिक्शा दिखाई दे रहा है जिस--

घर की सामने की तरफ कुछ खुर्चिया यहाँ पे रखी हुवी है।

यहा पर रास्ते में अगल बगल में गमले रखे गए है जिसमे पेड़ लगा--

मुझे सामने की तरफ बहोत सारी कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है और सामने की तरफ--

यहा पर मुझे बहोत सारे लोगो की भीड़-भाड़ दिखाई दे रही है। उप--